उसके ऊपर पहाड़ी टाइप का थोड़ा-सा बना हुआ है जहां पर पेड़ लगे हुए है और आसमान दिखाई दे रहा है।

क्रीमी शेड में है ऊपर की ओर आसमान दिखाई --

जिसने ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है अपना फेस पर मास्क लगा के रखा हुआ है।